पेंड़ हैं और कई गुलाब के पौधे लगे हुये हैं एयरपोर्ट बना हुवा है | एयरपोर्ट पे --

मैदान है मैदान में हरी घासे हैं औ मंदिर जैसे कुछ बना हुआ दिख रहा है लकड़ी जैसे --

हम्म मधु का चित्र बना हुआ है हॉल में रखा हुआ है।

और कई सारे मार्केट मछली मार्केट है। कई सारे लोग खड़े हुए हैं जो मछली ले रहे --

यह एक मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर नंदी बैठा हुआ है और वहां पे फुवारेदार पानी है जो उबलता हुआ निकल रहा है एक व्यक्ति है।